आजकल के बच्चे शाकाहारी भोजन को छोड़कर हमेशा मांस खाना ही पसंद करते हैं।

आजकल मेना देखा है कि जब भी शादी ब्या का मौका आता है सभी लोग बहुत किस्‍म की खर्चे करते हैं।

कई किस्‍म की मिठाईयां देखने को मिलती है जिससे मेरा मन खुश हो --

पंछियों को पकड़ने के बजाय उन्हें खुला छोड़ दो पिंजरे में बंद करके क्यों हम किसी इनं जीव की आजादी पर पाबंदियां लगाए जा रहे हैं।

बेचते हैं और लोग मांस के रूप में मछलियों का सेवन करते हैं मछलियां बड़ी ही --

जैसे कि दक्षिण भारत में अलग प्रकार से विवाह रचाया जाता हैं वहाँ लोग सफेद साड़ी कांचीपुरम पहनते हैं और वहां दोनों दूल्‍हा-दुल्‍हन यही पहनते हैं हमारे भारत में विविधता में एक --

हिरण एक बोहोत ही सुंदर पशु है वह एक शाकाहारी पशु है और आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है इसीलिए हिरण को संरक्षित करते हैं हमारे र-राज्य में।

वो प्राप्‍त होती है जैसे कि कलम पुस्‍तक --

हरे-भरे मैदान बहोत ही ज्‍यादा सुन्‍दर नजर आते हैं यहाँ कई प्रकार की वनस्पितियां पाई जाती हैं।

उन इमारतों को खड़ा कर --